सामने बहुत सारा डिपार्टमेंट है और सामने एक डोर है उसके ऊपर लिखा है इलेक्ट्रीकल एन जे डिपार्मेंट ।

ये पेट्रोल पंप है बड़ा सा अ सामने बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

चार-चार कलर की तीन जगह लाइट जली हुई दिख रही है।

पीछे बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है व्हाइट कलर का लकड़ी का गेट बना हुआ है आसपास।

आं दूसरे केबिन के बाजू में दो सोफा है और एक टेबल है टेबल पे वास रखा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा पेड़ है पेड़ के ऊपर एक पोस्टर लगा है।

ये एक बड़ा सा बुक का स्टेशनरी है।

बहुत सी बुक डायरी सामने रखी हुई है।

पीछे साइड पहाड़ दिख रहा है।

सामने ए_टी_एम मशीन दिख रही है ए_टी_एम का डोर ओपन है।

एक विंडो के पास किचन है।

एक व्हाइट कलर का टेबल रखा है और एक मटका है और एक गिलास रखा है।

ब्लू कलर के डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर रखा है।

बहुत सारे लाइट की फोकस लगे हुए हैं।

माल का रखा हुआ सामने बड़ा सा टेंपो खड़ा है उसके पास दो आदमी खड़े हैं।

ये एक झीम है जिम बड़ा सा है यहां बहुत सारे जिम के मशीन रखे हुए हैं।

और कांच के वॉल पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है बाहर साइड कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

चार बाइक खड़ी है और एक बाइक रोड पे जा रही है।

और डेकोरेशन किया हुआ है और पांच टेबल दिख रहे है।

और बीचोंबीच बहुत सारे टेबल लगाए हुए हैं।

टेबल के ऊपर तीन ग्लास रखे हुए हैं पानी के।

और साइड में प्रांत्स के डेकोरेसन किए गए हैं।

सामने एक ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी है।

एक प्लांट रखा हुआ है कुछ सामान रखे हुए हैं टेबल के ऊपर--